और सामने में एक सीढ़ी भी बना हुआ है।

यहां में बहुत सारा टीवी रखा गया है वॉल साइड में और सामने में बहुत बरा बरा टी_वी सब भी रख के है।

आधा रेड से पेंट करके है और नीचे वाला टाइल्स लगा के है।

जहां में बहुत सारा कलर और बहुत सारा सामान को बॉक्स बॉक्स में अलग अलग से रखा गया है।

और वो घर का आगे डस्टबिन सब भी है जो कि ग्रीन कलर और रेड कलर में है।